यहाँ पे एक खाली मैदान पड़ा है। उसमे पोस्टर लगे है दो उन पर लिखा है समर्पण मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर और पेड़ लगे हुए है गिट्टी पड़ी हुई है रेत पड़ी हुई है।

और एक क्लास रूम दिखाई दे रहा है बोर्ड लगा हुआ है सफ़ेद कलर का और उस रूम में सफ़ेद कलर से पेट हो रहा है।

एक झोपड़ी टाइप दिखाई दे रही है जो ईट से बनी हुई है। उसमें एक क्लास रूम है। इसमें एक बोर्ड लगा हुआ है। बेंच रखी हुई है एक किताब रखी हुई है एक बैग टंगा हुआ है और चादर लगी हुई है।

है एक बिल्डिंग बनी हुई है जो स्कूल की तरह दिखाई दे रही है | इसमें बहुत सारे गेट लगे हैं खिड़कियाँ लगी है जो डबल मंजिल है और उसमें सफेद कलर से --

पेंट हो रहा है बाहर जीना बना हुआ है इसपे एक पोस्टर लगा हुआ है और इसमें सी.एम.एस. गर्ल स्कूल है।